पर बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं ऊपर यहां--

इसके सामने यहां पर दो तीन गाड़ियां खड़ी है जिसके ऊपर नीली बत्ती लग रही है यहां--

गाड़ी के आगे एक काला झंडा लग रखा है यहाँ पर दो पुलिस वाले खड़े हैं बहुत सारे--

यहां पर एक छोटी सी दुकान है जिसमें यहां पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है ब--

जोकि यहां पर अलग अलग इंस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे है किसी के हाथ में तबला है किसी के हाथ में पियानो है यहां पर दो चार माइक है।

यहां पर पीछे एक लोटा रखा हुआ है। यहां पर एक कुर्सी रही हुई है।

ऊपर अंदर बहोत सारी किताबें रखी हुई है यहां पर एक मेजे कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर अंदर एक गेट है गेट के अंदर एक आदमी है जो की--

सामने एक स्टूल रखा है यहां पर एक इनवर्टर दिखाई दे रहा है नीचे यहां पर फर्श हो रखा है।

अलग अलग टा टाइलों का यहां पर दो चार लाइटें लगी हुई हैं।

एक आदमी है जो कि चल रहा है जिसके हाथ दिखाई दे रहे हैं।

इसके उपर ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखी हुए हैं यहां पर शिशो सा डिजाइन बना रखा है दीवार पर तोफ का गेट लगाया हुआ हैं।

एक लकड़ी का एक शीशे का यहां पर अंदर एक छोटी सी दुकान है जिसमें यहां पर काउंटर रखा हुआ है।

इसके ऊपर छत डाली हुई है सामने बहुत सारे पेड़ है एक दीवार है जिसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है।

पीछे एक छोटा सा घर है सफेद कलर का।

सामने यहां पे तीन बोड लगे हुए हैं निशाने करने के लिए यहां पर--

यहां पर एक पियानो रखा हुआ है सामने एक हेलमेट रखा हुआ है यहां पर लोहे की रिंग रखी हुई है।

यहां पर सामने एक आदमी खड़ा हुआ है सफेद रंग के कपड़े पहन के जिसके के सामने एक लकड़ी की मेज रखी हुई --

यहां पर बहोत दो चार औ पिले पोस्टर लगे हुए हैं सामने बहोत सारे लोग चल रहे हैं।

यहां पर घास से बाउंड्री बना रखी है सामने दो चार कुर्सीयां पड़ी हुई मेज पड़ी हुई है।

ये पानी है और एक पेड़ इधर थोड़ी दूर खड़ा है।

इसके यहां पर बोनट खुला हुआ है यहां पर--

यहां पर बहोत सारे बोर्ड लगे हुए पीछे बहुत सारे पेड़ खड़े हैं।

तीन शटर लगे हुए हैं यहां पर एक गाड़ी खड़ी है दो स्कूटी है यहां पर--

दो तीन बाइक हैं और यहां पर दो लेडिज है जो चल रही हैं ऊपर यहां पर बहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं बहोत सारी खिड़कियां चमक रही हैं।

यहां पर एक छोटा सा पुल बना रखा है जिसके आ यहां पर एक लोग एक लुगाई खड़े हैं।

एक गुलाबी पहेरा है बुशर्ट मोटरसाइंकल पे बैठा है।

यहां पर बहोत सारे शटर लगे हुए हैं जोकि बंद पड़े हैं।

वहां पर लाल और सफेद गुब्बारो से अंदर बहुत सारी कुर्सियां पड़ी है टेबल पड़ी है।

एक बाहर गाड़ी खड़ी हुई है काले रंग की तीन आदमी खड़े हुए हैं एक पंखा है अंदर एक स्टूल है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे बूढ़े यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं।